आरों चल रहा है। जिसका बाहर गेट बना है। जोकी बहोत ही सुंदर सजाया गया है। यहा पे दो आदमी खड़ा हुआ है। दोनों ने सामने की तरफ देख रहे है।

फोन पे बात कर रहा है। उसके बाजू वाले दोनों आदमी बैठे हुए है। दोनों ने चसम पहने हुए है। यहा पे एक आदमी खड़ा हुआ है। जो की कैप्टन है। और पीछे हाथ करके खड़ा हुआ है।

दिखाने वाला इंसान है। इसने बहोत ही सारा फूल की बाजार लगाई हुई है। सामने एक चैर है। जोकी रेड कलर की है। और उसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है। और सामने की तरफ देख रहा है। पीछे लगी हुई है।